सामने यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने शूज पहन रखी हैं और बैग टांग रखा हुआ है पीछे एक औरत नजर आ रही है जिसने गोद में एक बच्चा ले रखा है।

सामने दूर पर पहाड़िया नजर आ रही है। आसमान में काफी सारे सफ़ेद रंग के बादल नजर आ रहे है।

सामने लकड़ी की अलमारी बनी हुई है जिसमें काफी सारे सामान रखे हुए है। किनारे शूज रखे हुए है नीचे कपड़े रखे हुए है सामने बैडमिन --

सामने लोहे का जंगला बना हुआ है। अंदर एक हरे रंग का मैदान है जिसमें बड़े बड़े घास लगे हुए है‌। बीच में ब्राउन कलर का घास है। यहाँ अंदर काफी सारे हिरन है।